घर के अंदर एक कार लगी हुई दिख रही है।

उसके सामने एक छोटा सा गार्डन दिख रहा है गार्डन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए नजर आ रहे हैं।

पेड़ भी दिख रहा है एक घर भी दिख रहा है घर का कलर वाइट है।

चश्मों का कलर ब्लैक एंड ब्लू व्हाइट रेड एंड येलो है।

एक आदमी गमछा ओढ आते हुए दिख रहा है।

बहोत सारे पेड़ भी नजर आ रहे है।

बहुत सारे बच्चों के कपड़ों कपड़े दिख रहे हैं।

बहोत सारे टाइल्स भी दिख रहे हैं।

रिपब्लिक हायोंडा वेलकम यू लिखा हुआ दिख रहा है।

एक रिक्शा भी नजर आ रहा है।

बोर्ड पे प्लीज स्टॉप फॉर सिक्योरिटी चेक टाटा पावर लिखा हुआ है।

ऊपर भी टाटा पावर लिखा हुआ दिख रहा है।

इसके बगल में दो आदमी दिख रहे हैं और बहुत सारी बाइक लगे हुए ल दिख रहे हैं।

उसके बगल में एक रूम दिख रहा है रूम के अंदर पाइप रखे हुए नजर आ रहे हैं।

चेयर पर लेडी लोग बैठी हुई दिख रही है।

इस फोटो में एक फर्श भी दिख रहा है जिस पर स्क्वायर टाइप बना हुआ दिख रहा है।

प्लास्टिक का कलर गुलाबी ब्लू और पीला है।

इस फोटो में एक ए_सी दिख रहा है ए_सी व्हाइट कलर का है।

दो और डब्बे दिख रहे हैं।

बाहर एक रोड भी दिख रहा है और छोटे छोटे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में डी_जे के ऊपर पांच लाइट लगे हुए दिख रहे है।

और एक बड़ा सा गेट भी दिख रहा है उस पर लिखा हुआ है छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नगर पंचायत सोनपुर आपका हार्दिक अभिनन्दन करता है।

एक बाइक भी लगा हुआ दिख रहा है।

इस फोटो में नीचे बोरा रखा हुआ दिख रहा है।

यह फोटो एक डैम का है इस फोटो में बहोत सारे गेट दिख रहे हैं।